चर्च के दरवाजे पे बलून से सजावट किया हुआ है बाहर में कुछ लोग खड़े हैं।

कॉम्प्लेक्स में एक नादानी ज्वैलर्स नाम का शॉप है।

बाहर में बहुत सारे गाड़िया लगी हुई है।

बाउंड्री है बाउंड्री के अंदर एक पेड़ है।

बहोत सारे तारे लगे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में फ्रिज है।

एक पॉल दिखाई दे रहा है।

मेले की दुकान में ढेर सारे लकड़ी के बने हुए बरतने हैं।

काउंटर में बहोत सारे मिठाई लगे हुए हैं।

टेबल लगा हुआ है टेबल पे कॉपी किताबें रखे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं।

बोर्ड पे बहोत सारे लाइटे जल रहे हैं।

एक नी नफीसा जहान करके लिखा के बोर्ड टंगा हुआ है।

और एक पिकअप और टेंपो है जो इस तरफ आ रहा है एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर के एक झोला पकड़ी हुई है।

सर्विस सेंटर के बाहर एक कार खड़ा है।

ये एक थाना है थाना एक बगहा में है।

सभी के परछाइयां दिखाई दे रही है।

और खिड़की दिखाई दे रहे है।

यह एक शॉप है इसका नाम सिटी कार डेकोर है।

कार में लगने वाले छोटे छोटे सामान वगैरा यहां पे मिलते हैं।